--और मनोरंजन करने वाले खेल खिलौने भी वहाँ पर रखे हुए है भी रखी हुई है और बगल मे भगवान जी की मूर्ति भी टंगी हुई है।

अभी हमे एक सॉफ्ट मूड बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारे सेंट रखे हुए है फॉग वगैरा भी रखा हुआ है बहोत सारे महंगे महंगे सेंट लगे हुए है।

यहाँ पर हमे एक सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़ी वाली लाइट लांच चौबीस घंटा जलने वाली लाइट टावर भी दिखाई दे रही हैउसमे बहुत सारे तार भी निकले हुए है ।

ये मकान नहीं बह ये कोई महाविश्व विद्यालय बना हुआ है वहाँ पर बहुत सारे वाहन रखे हुए दिखाई दे रही गाड़ी रखी है जीपे भी रखी हुई है और बहुत सारे व्यक्ति भी वहाँ दिखाई दे रहे है और घने घने पेड़ पौधे भी लगे हुए

यहाँ पर भी हमे एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक टेंट हाउस भी बना सा दिखाई दे रहा है जो की बहुत सुंदर लग रहा है नीचे शटर लगी हुई है और मकान की बहुत सारी खिड़कियां लगी दिखाई दे रही है ।

उसके पैर भी नीचे की और रखे हुए है वहाँ पर कुछ हरी हरी घास दिखाई दे रही है और बगल मे बहुत अच्छे पौध भी लगे हुए हैं ।